पेड़ लगे हुए है घना चप जंगल हैऔर जिसमे आधे पेड़ का वाइट कलर से पेंट किया गया है और कुछ एक लेडीज सी खड़ी हुई है खुला--

और फर्नीचर है जो ग्रे कलर का है नीचे टाइल्स लगी हुई है साइड से एक और फर्नीचर है व्हाइट कलर का जिस --।